और ये कपड़ा कोट पेंट टाइप का है।

और इसके सामने में कोई गेट नहीं है बालकनी भी दिया हुआ है। बालकनी में गमला रखा हुआ है।

बहुत बढ़ियां है बिहार का यह महापर्व है ।

कलेक्शन है कलेक्शन वायर है।

ये श्री राजेश्वरी ब्लाक है।

ये लोग पैसा जमा करते हैं और समय आने में देना बैंक से निकाल लेते हैं।